और खम्बे दिखाई दे रहे है पंखा दिखाई दे र रहा है लाइट दिखाई दे रही है रौशनी सूरज की किरण दिखाई दे रहा है और बहुत सारी बाइके भी दिखाई दे रही है।

औरते दिखाई दे रही है लाइटे दिखाई दे रही है फूल दिखाई दे रहा है जो पेड़ पौधे दिखाई दे रहे है आसमान दिखाई दे रही है और--

इमेज में बहुत ही सुंदर सा चित्र दिखाई दे रही है सोफा दिखाई दे रही है ऐसा लगता है कि बुके वुके दिखाई दे रही है।

इस इमेंज में एक सुपर मार्केट की चित्र दिखाई दे रही है सामने सीढिया दिखाई दे रही है लोखंड की ग्रिल दिखाई दे रही है स्टील की सामने बोर्ड दिखाई दे रही है अंदर बहुत सारी चीज़े दिखाई दे --

इमेज मैं एक इंसान कि पग दिखाई दे रहा है सामने दो बड़े बड़े झाड़ दिखाई दे रहे है नारियल की झाड़ दिखाई दे रही है।

एक बहुत ही बड़ा स्कूल दिखाई दे रहा है स्कूल की खिड़की दरवाजे दिखाई दे रही हैं तार दिखाई दे रहा है बहुत सारे झाड़ दिखाई दे रही है।